यहां पर गुलाब का पौधा दिख रहा है यहां पर सफेद कलर का फूल लगा हुआ है।

यहाँ पर हरा हरा पौधा दिख रहा है यह पौधा कटहल का पौधा हैं।

यहां पर खंभा लगा हुआ है।

पानी इकट्ठा है यहां पर बड़ा बड़ा चट्टान दिख रहा है।

लड़का खड़ा है यहां पर एक चश्मा दिख रहा है।

बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं यहां पर लाइट लगा है।